हमें यहाँ पर बहुत सारे कुछ कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक ट्रेन दिखाई दे रहा है उसका डिब्बा दिखाई दे रहा है जो कि माल गाड़ी का डिब्बा है।

यहाँ पर बहुत सारे खंभे दिखाई दे रहे है उसमे से सितारे दिखाई दे रहे है बहुत सारे गिट्टी है घाँस है रेलवे के पटरीया है अगल-बगल पेड़ लगे हुए है।